हरे हरे पौधे है पिछे घर है शंकर भगवानजीके गले मे गेंदे की फूल की माला चडी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है यहाँ पर बच्चे बड़े दोन्हों प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे है और एक पीछे बड़ासा बोर्ड लगा है असपे लिखा है मम्मी एज़ डैडी ।

यहा पर एक पेड़ के नीचे बहुत सारे हिरण दिखाई दे रहे है। एक हिरण छोटे पौधो मे भी खड़ा हुआ है और इधर के पौधे बिलकुल ग्रीन नजर आ रहे है।

और दो लोग दिखाई दे रहे है जो एक आंटी जा रही है इन्होने चश्मा लगाया है येल्लो कलर की साड़ी पहनी है और यहा पर नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे है और वह व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे।

और सभी पर टोन एस_एस एडीडास लिखा हुआ है।